सामने पर्दे टंगे हुए हैं पर्दो का रंग सफ़ेद है और कुछो का स्लेटी है कुछो का लाल है और कुछो का नीला है और --

क्रीम कलर की दीवारें बनी हुई हैं ऊपर छत का रंग सफेद है और जम जमीन का रंग स सफेद कलर का --

ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं बच्चे खो-खो खेल रहे हैं एक बच्चा भाग रहा है कुछ बच्चे जमीन पर बैठे हुए है।

कुछ बच्चे उधर एक बाउंड्री जैसी मेड पर बैठी हुए हैं और नहीं एक बच्चा इधर की लाइन में एक बच्चा उधर की लाइन में कुछ बच्चियाँ बैठी हुई हैं कुछ आधी खड़ी हुई है जमीन पर घा --

सामने एक सूरज निकल रहा है जो की नदी में चमक रहा है कुछ लोग खड़े हुये हैं।

उने एक आदमी झाडू लगा रहा है जो और बहुत सारे पत्ते झाडू में दिखाई दे रहे है सड़क का रंग स्लेटी कलर का है बगल में कुछ पेड़ लगे हुये है।

इसमें कुछ डी टोफ़ियों के डिब्बे रखे हुए हैं और छत का रंग सफेद है और दीवारों का रंग गुलाबी है।

एक टे-टेंट लगा हुवा है वहा से रोशनी आ रही है और कुछ ओरते गाना गा रही हैं।

और एक आदमी का मुंह दिखाई दे रहा है एक लड़की ने स्लेटी कलर के कपड़े पहने हुये है एक औरत नीले कलर की साड़ी पहने हुये बैठी हुई है एक पीले कलर की सामने मन्दिर बना हुआ --